यहां पर अ रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल अलग-अलग बनाए गए हैं।

में पेट्रोल डलवाता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है।

यहां पर लोहे का बोर्ड लगाया गया है।

जिन्हें दिखाई देकर दिखाई पड़ता है समझ में आता है।

यहां पर अं सुबह का समय दर्शाया गया है।

कई सारे मुस्लिम भाई बैठ कर नमाज पढ़ते न--

यह तस्वीर भैंसों को रखने की जगह की तस्वीर दर्शाई गई है जैसा की तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यहां पर बहोत सारी भैंसे रखी गई है।

यह तस्वीर सरकारी दफ्तर की तस्वीर दर्शाई गई है जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख ही पा रहे हैं यहां पर अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं।

यह एक डांस कंपटीशन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक शो रुम की दर्शाई गई है।

यह तस्वीर गाड़ी के शोरूम की नजर आ रही है।

जैसा की तस्वीर में देख सकते हैं यहां पर ग्रैंड मॉडल --

फूल फूल पत्तियों के साथ और यहां पर व्यक्ति क अ कलरफुल कपड़े ड्रे ड्रेससे पहन कर--

रखा गया है जैसा कि तस्वीर में देखी--

यहां पर एक बहोत बहुत सुंदर सा बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत सुंदर सा गेम पार्लर है यहां पर टेब यहां पर टेबल बॉल्स खेली जाती है।

यह एक सुंदर सी तस कलरफुल तस्वीर दर्शाई गई है।